चौराया है जिसके बीचों बीच एक टावर है।

जिस जंगल के अंदर मुझे कुछ हिरण दिख रहे हैं।

जिसके किनारे पर एक आदमी खड़ा है।

और अलग अलग तरीके की मछलियां रखी हुई हैं।

और यहां पे जॉनी हॉट डॉग बहोत फेमस है।

मैं इस चित्र में देख पा रही हूं कि एक बहोत बड़ा स्पोर्ट --

आयल और सीरम रखे हैं और अलग तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रखे हैं।

तेल इनकी बॉक्सेस रखें हुए हैं।